इस तस्वीर में काफी सारे आदमी दिख रहे है।

और एक आदमी बनियान पहना हुए है नीले रंग का है।

यह एक सड़क का दृश्य नजर आ रहा है।

साइड में बोर्ड भी रखे हुए हैं।

औरी इस नाव में तीन आदमी बैठे हुए हैं।

और काउंटर पर काफी सारे कंप्यूटर भी रखे हुए हैं।

और काफी सारे आदमी हैं और पीछे एक बिल बड़ी बिल्डिंग नजर आ रही है।

और तीन साइड भी घीरा हुआ है।

और एक टेंट भी लगा हुआ है यहां पर।

और इस नदी के एक तरफ हरियाली भी आई हुई है।

और भी इस दुकान में बहुत सारा सामान है।

यह एक अंदर का दृश्य नजर आ रहा है।

यहां पर टेंट बंधा हुआ है और यहां पर शादी हो रही है।

और यहां पर अंदर कुछ डिब्बे भी रखे हुए है।

और यहां पर काफी सारे पेड़ भी नजर आ रहे हैं।